इस फोटो में हमें एक बहोत ही बड़ा खुला मैदान दिख रहा हैं और--

कुछ प्लेयर्स वगैरह दिखाई दे रही हैं कलरफुल ब्लैक ऑरेंज व्हाइट --

एक ने काले रंग की शर्ट पहनी है और एक ने येलो रंग की--

दीवार पे लिखा हुआ दिख रहा है।

और भी बहुत सारे लाइटें और फैन --